और कुछ लड़के भी खड़े है यहाँ पर। यहाँ पर पब्लिक इन्जॉय करने आती है।

और काफी सारे लोग एडवेंचरस के लिए भी आते हैं शौक-शौक में। आप देख सकते हैं ये बोहोत ही खुबसूरत है। आप भी जा सकते है यहाँ पे बोहोत ही --

देख सकते हैं ये पानी है और यहाँ पर एक तालाब है जो साइड साइड में यहाँ पर रोड्स भी बनाए गए हैं देखने के लिए पब्लिक आती है देखती है।